ग्रिज नीचे का ग्रीन कलर का मैट उसके सामने उसके साइड में बैलून लगा हुआ है ऊपर साइड में बहुत सारे आदमी सब भी हैं और उसके सामने एक दीवाल है।

कुछ लोग एक नीचे कुछ बिछाके बैठे हुए है उसके सामने एक सीढ़ी भी है एक और ये गोल्डन कलर का कुछ है।

वहाँ साइड में भी बहुत सारे खास से तीन आदमी एक साइड खड़े हैं इधर बहुत सारे आदमी हैं एक दो आदमी वाइट गंजी पहने हुए हैं दो चार ब्लू वाइट कलर का सर्ट --

एक फर्नीचर का दुकान जिसके सामने पलंग का सामान रखा हुआ है जिस पलंग के समान में दो वाइट कलर के पिलो हैं।

और दो फेविकोल सब भी हैं उसके ठीक नीचे एक झोला भी हैं उसके अंदर बहोत अंधेरा भी है और--

और ये बहोत साफ जगह है उसके सामने एक व्हाइट करके बिल्डिंग भी खरा खड़ा है उधर थोड़ा दूर जा के बाइक सब भी लगे हुए हैं।

उसके ठीक साइड में भी एक घर है जिसका जिसके ऊपर बहोत सारे बास लगे हुए है।

आई हुई है यहाँ पे एक मैडम का साड़ी ग्रीन कलर का है एक ऑरेंज कलर का ब्लैक कलर का है उसके ठीक सामने बेंच है वहाँ पे दो-चार रस्सी बंधे हुए हैं।

बहुत सारे शूज हैं और इसके ऊपर एक छत है जिसका वाइट कलर है वहाँ पे बहुत सारे लाइट में लगे हुए हैं ठीक सामने बहुत सारे कार्टून --

वाटर लग रहा है उड़ रहा है वहाँ पे साइड में एक बिल्डिंग भी है जिसका कलर वाइट कलर का है उसके ठीक सामने बहुत सारे आदमी भी हैं और बिल्डिंग के ऊपर दो चार फूल भी है उसके ठीक ऊपर एक --

यहाँ एक स्कूल है जिसके सामने गेट है जो गेट ब्लैक कलर का वहाँ पे एक लड़के जा रही है देवाल पे पांच लिखा हुआ है तो लड़के जा रहे हैं साइड में बहुत थोड़ा गार्डन भी है दीवाल --

उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे ग्रीन कलर के पेड़ सब लगे हुए हैं।